यह एक रोड का दृश्य है रोड के किनारे बहोत सारे मोटरसाइकल साइकल और एक वैन लगी हुई है रोड पर एक ऑटो जा रही है।

इस बिल्डिंग में बहुत सारे खिड़की दरवाजे बने हुए हैं।

मूर्तियां पुरुष और महिला की बनी हुई है।

दुकान में एक बेंच भी लगा हुआ है दुकान में नीचे एक ग्रीन कलर की कारपेट भी है।

मंडप के चारों तरफ बिरंग बिरंग के कपड़े से सजे हुए है।

घर के ऊपर में करकट लगा हुआ है।

इस पार्क में बहोत ज्यादे गेंदे के फूल लगे हुए हैं पीले कलर के और ऑरेंज कलर के।

यह एक जंगल पहाड़ का दृश्य है यहां चट्टानों के बीच से पानी बहती आ रही है।

यहां पे पानी भी है पानी में बत्तख भी है बत्तख का कलर व्हाइट और ब्राउन है।

बाउंड्री के अंदर भी छोटे छोटे नीचे में घास लगी हुई है।